यहां पर हमें बहोत ही जहां पर हमें --

बहोत लंबे लंबे पेड़ हैं ये जोकि मंदिर से तीन चार गुना लंबे हैं।

और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है।

छोटी छोटी मूर्तियां रखी गई है और साथ में यहां पर--

जैसे गेंदा फुल है बहोत सारे सफेद फूल भीं मुझे दिख रहें है लाल फूल है पिक फुल है और मिक्स किए गए हैं हारें बनाई गई है इनकी।

नदी के किनारे रेत के ऊपर इनकी पैरों के निशान जो हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर बहोत सारी रेत है किनारे पर।

और लाइन में चले रहे हैं एक लाइन --

और यहां पर एक कैमरा मैन जो है इनके फोटो वीडियो बना रहा है।

जहां पर मुझे दो बसे दिख रही है लगी हुई और--

इस फोटो मे मुझे सामने मे एक बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ पेड़ लगे हुए हैं जिनकी कटिंग बिल्कुल राउंड की गई है बहुत ही अच्छे से की गई है बेलनाकार में।

और सामने में एक मुझे शॉप दिख रही है।

जहां पर अधिकारी बैठते हैं रेल्वे सबंधी --

बहोत सारे दुकाने दिख रही है जैसे एडिडास के ब्रांड की दुकान है।

फोटो में मुझे बहुत सारी दुकानों के जो है पोस्टर दिख रहे हैं।

जैसे गीतांजलि बुटीक एंड टेलरिंग --